और एक झोपड़ी सी लग रही घर है एक यो--

और एक घर है जिसके ऊपर दो टंकी रखी है।

और पीछे की तरफ पेड़ पौधे हैं।

कुर्सी है बैठने के लिए स्टूल है।

बहुत सारे मशीन रखी है रस्सा टंगा है एक--

और ऊपर टीन बिछरी सारी और पीछे के तरफ हरे हरे रंग का कुछ है ऐसे--

और बहुत सारे एक टंकी रखी है ऊपर हरे रंग की।

सामने की तरफ पेड़ पौधे हैं बहुत सारे।

एक्सरसाइज कर रहे हैं बहोत बड़ी बड़ी मशीन लग रही है ऊपर लाइट लग रही --